यह दृश्य एक सब्जी मण्डी की है।

इस दृश्य में हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनके सामने एक तराजू रखे हुए हैं एवं दो कटोरे भी रखे हुए हैं।

पीछे बहोत सारे छोटे छोटे पौधे हैं।

वहां पर तीन लोग खड़े हैं जिसमें दो जेंट्स और एक लेडी है लेडी ने पिंक कलर की शॉल ओढ़ी हुई।

एक लड़की ने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है उसने चश्मा लगाया हुआ है।

यह दृश्य एक पार्किंग एरिया का है जहां पर बहोत सारे गाड़ी लगी हुई है।

यह चित्र एक अपार्टमेंट की है उसके नीचे एक एस_बी_आई का ए_टी_एम है।

इस दृश्य में हमें बहोत सारे सोफे नज़र आ रहे हैं।

दुकान का कलर ब्लू है सामने एक लाइट लगी हुई है।

उसके जस्ट सामने एक और शॉप है।

सामने एक छोटा सा पौधा भी दिखाई दे रहा है।

वहां दो दीवाल नजर आ रही है दीवार के सामने दो पेड़ लगे हुए हैं।

यहां की दीवारें पीली रंग की है।

अमने एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने काले रंग के शर्ट पहन रखे हैं।

जिसके सामने के दरवाजे पर डेकोरेशन किया हुआ है।

साइड में एक येलो कलर का बेंच लगा हुआ है।

सामने में कुछ पौधे लगे हुए हैं और वहां पे बहोत सारे छोटे छोटे घास--

दीवाल पर एक पोस्टर लगा हुआ नजर आ रहा है।

दीवाल पर गोल्डेन कलर से फ्रेम बनी हुई है।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं सामने बांस पर एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है।

एक आइसक्रीम पार्लर है आइसक्रीम पार्लर के सामने दो लोग चेयर पर बैठे हैं।

हमने एक येलो कलर की ऑटो लगी हुई है।

सामने टेबल पर कुछ तीन प्रोडक्ट रखे हुए हैं जिनमें से एक गोल्ड प्लस ब्यूटी फ ब्यूटी फाइन मास्क है ।

वहां पर चार खिड़कियां है जिस पे वाइट कलर की लकड़ियों से काम किया गया है।

सामने रेक पर बहोत सारे स्टील के छोटे छोटे डब्बे हैं।

वहां पर बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं कुर्सियो का कलर ब्लू है वहां पर बहुत सारी बैंच रखी हुई है।